बाहर साइड सरिए लगे हैं अ ओ और पर्दे लगे हुए है ऊपर छत है छत में ऊपर वायर टंगे हुए हैं।